यह पंखी रंग से भी इस रंग की पोताई है।

एवं उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी उपलब्ध हैं।

बोहोत बड़ा आलीशान मेड कोस्ट --

खड़ा हुआ है व सफेद शर्ट और काला लोवर पहने है।

उसके उसको ताल के पिजरों मे अंदर किया गया है।

इस चित्र के माध्यम से ये कलाकृति --

क्लास में एक ब्लैकबोर्ड भी स्थापित है।

छत पर रिपेयरिंग कार्य कर रहा है।